जहां पर एक बड़े बड़े गैस के सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं।

यह ब्रिज देखने में काफी सुंदर दिखाई दे रहा है।

और नदी का पानी भी काफी साफ दिखाई दे रहा है।

बड़ी बड़ी क्रेन लगी हुई है।

यह पंख काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं।

इस दुकान पर अलग अलग प्रकार की लाइट --

जिस प्रकार की इनकी वेश भूषा है यह--

यहां पर एक गाड़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से--

दूल्हे को ले जाने के लिए सजाई हुई दिखाई दे रही है।